फैन भी दिख रहा है एक एल_सी_डी भी दिख रहे हैं।

यहां कुछ लोग हैं जो खड़े हैं।

कुछ गेटे भी लगी है जो वाइट और ग्रीन में है।

दीवार में स्विच भी लगाया गया है।

सीलिंग में बहुत सी लाइटें लगी हुई है ।

एक व्यक्ति भी खड़ा है जो बैग टंगा हुआ है।

बटर भी दिख रहे हैं पोस्टर भी लगा हुआ है।

कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

यह एक मस्जिद का चित्र है।

यह एक छोटे से माल का चित्र है।

लाइटें भी लगी हुई है।

यहां एक व्यक्ति बैठा हुआ दिख रहा है।

टोपी भी पहना हुआ है।

भगवान को बहोत सारे फूल से सजाए गए हैं।

बहुत सारे बने हुए हैं।

सामने एक पंखा भी है जो बंद पड़ा है ।

सारे पेड़ भी दिख रहे हैं नीचे मार्बल लगा हुआ है।

और भी दिख रहे हैं एक घर भी दिख रहा है।

यह एक छोटा सा गार्डेन के अन्दर का चित्र है।

शीशा में ईंट भी दिख रहे हैं ।

मंदिर दिख रहा हैं जो पिंक कलर में है और थोड़ा सा ब्लू में।

यह एक चित्र तुर्क किला का चित्र है।

एवं बहोत से खाने के वैरायटी के नाम लिखे हुए हैं।

पीछे कैमरा भी लगाया गया है।